तो बैंक में डाले बैंक से भी निकलते हैं। अर्जंट में निकाले तो ए.टी.एम. में से भी निकालते हैं अर्जंट में।

अपनी बॉडी बनाते हैं। शरीर को मजबूत करते हैं।

शहर में बहोत ही बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और फैक्ट्रियाँ भी हैं इसमें और इसके ऊपर बादल भी घूम रहे हैं बोहोत ही अच्छे सुंदर बादल।

धान कोट् करके चावल निकलता है।

यहाँ से लोग खाने के लिए ले जाते हैं।

बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर।